इसमें बहुत सारे पहाड़ है पहाड़ पे ही छोटे छोटे पेड़ लगे हुए हैं।

पेड़ के साइड में ही एक बहोत पेड़ बड़ा पेड़ लगा रखा है और ग्रीन कलर की घास है।

यह स्वीट्स की शॉप है जिसमें अलग अलग प्रकार की मिठाइयां रखी हुई है लड्डू बर्फी काजू कतरी छोले भुजिया चना।

प्लास्टिक के और पत्थर के भी और उनका अंदर से सीमेंट की और बाहर येलो कलर है और ग्रीन कलर है।

और इनके आप पास और कोई पशु या जानवर नहीं है।

यह एक होटल की फोटो है सामने दरवाजा है बाथरूम का ऊपर ए_सी लगा हुआ है और--

यह स्विमिंग पूल के पास की फोटो इसमें बहुत सारे बड़े बड़े झूले लगे हुए हैं येलो रेड ब्ल्यू ग्रीन बहुत सारे झूले लग रखे हैं।

और कुछ बच्चे झूला झूल रहे हैं और झूला कुछ झूले बहोत बड़े बड़े हैं।

बड़ी सारी नदी के सामने ही बहोत सारे घर दिख रहे हैं और एक और नाव दिख रही--

ले रहे हैं। यह एक जंगले के पास खड़े है ज अंकल के पीछे एक बोहोत बड़ी मोटर दिखाई दे रही है।

ये ऐ_सी शॉप है जिसमें रखा है और फोन में कुछ चला रहा है और एक गेट पे कोई खड़ा है आदमी सा के--

और उसी के स्टेयर के ऊपर पंजाबी में लिखा हुआ है और साइड में पिलर लगे हुए हैं।

ग्लास के साइड में शोपीस लकड़ी का फर्नीचर रहा है और सामने एक और टेबल है दो और लकड़ी के टेबल --

यह बहुत बड़ा तालाब है तालाब के साइड में ही एक बड़ी सारी नाव है।

साइड में कुछ बिल्डिंग सी है पीछे बैकग्राउंड और पेड़-पौधे लगे रखे हैं और कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

इसके अंदर लोहे की कुछ तार है। ऐसे ही रखी हुई है। सब अ सिल्वर रखे हुए है और एक अंकल दिख रहे है जिनका फेस नहीं दिख रहा।

पीछे सामने यह शॉप दिखाई दे रही है शॉप सीमेंट वगैरह की है।

बोर्ड भी लगा हुआ है बिजली के लिए चार्जर वगैरा के लिए बोर्ड भी लगा हुआ है।